और रात का व्यू है बाहर दिख रहा है।

और मैं एक छोटा सा सोफा भी देख सकती हूं वहां पर।

सो मेनी बैंचेस जो की येलो और ग्रीन कलर में है।

देयर आर सो मेनी टूल्स जिम करने के लिए जैसे डमबल्स और अदर एक्सरसाइज मशीन्स ।

और फर्स्ट थिंग ये शायद एक टैटू शॉप है और एक ब्लैक कलर की टी- शर्ट में एक लड़का टैटू बना रहा और--

पीछे एक ब्लैक कलर की वाल है उसे पर बहोत सारे टैटूज बने हैं।

और इस बिल्डिंग के सामने एक आदमी है जो अपने बाइक के सहारे खड़ा है और आई कैन अल्सो सी टू बाइक्स जो कि लगी हुई है बिल्डिंग के बाहर।

अ डोअर क्लोज्ड है और आय कैन अल्सो सी ए झुमर।

आ मुझे बहोत सारे चीज दिख रहे हैं आई केन आलसो सी अ बिल्डिंग --

और आई कैन सी ए बोर्ड जो कि उस बिल्डिंग पे लगा है जिसमें लिखा है --

वहा पे बाहर फ्लफी से टॉयज भी लगे हुए हैं।

घास का मैदान दिख रहा है लोग अरे परे चलते हुए दिख रहे हैं।

बिल्डिंग पूरी लकड़ी से बनी हुई है।

आई कैन सी अ वेरी ह्यूज एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स।